झूले ले रहे हैं। एक बच्चा हाथी--

यह लॉयड कंपनी का है।

पड़े हैं ऑफिस में ए_सी भी लगा हुआ है।

डॉक्टर पेशेंट को बिठाकर दांत चेक --

ट्रैफिक में लड़के लड़कियां व्हीकल्स पर जा--

में पेट्रोल डाला जाता है।

कर रहे हैं ग्राउंड के--

नीचे मेट बिछे हुए है मेट --

वो पिलरों से बांधा हुआ है।